बने हुए है बिच में लोहे का गेट है।

बगल में एक हरा-भरा पेड़ है इसके पीछे भी एक मंज़िल है।

एक स्कॉर्पिओ गाड़ी और एक इनोवा गाड़ी खड़ी है।

यहाँ एक जे.सी.बी. है जो जमींन की खुदाई कर रही है।

यहाँ एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसके पीछे --

और दो तिरंगा भी लगा हुआ है।